एक आदमी गंजी पहने हुए दिखाई पड़ रहा है।

दी का पानी शांत नजर आ रहा है।

येह किसी स्कूल का चित्र नजर आ रहा है स्कूल हल्के भूरे कलर से है।

नीचे जमीन ब्राउन है पेड़ की छाया दिख रही है दूर स्कूल के बगल में एक पेड़ भी है।

एक लंबी सड़क नजर आ रही है जहां पर एक बाइक खड़ी है यह रात का व्यू है।

बाहर एक लड़की खड़ी है जिसने गाउन पहनी हुई है।

आदमी पेड़ा दे रहा है कुछ फोटोज भी लगी हुई है।

और एक लंबा सा टावर भी है जहां पर दो तीन हैलोजन लगे हुई है।

एक पुतला भी है जिसने शर्ट और कोट पहनी हुई है और दूर में एक टेबल भी है।

इस चित्र में रोड का चित्र नजर आ रहा है जहां पर कुछ पेड़ हैं बड़े बड़े--

सभी आटो अलग अलग कलर की हैं ज्यादातर ग्रीन और येलो कलर की हैं।